एक मकान दिख रहा है एक अदमी एक व्यक्ति साइड में दिखा रहे है कुछ ईंटें पत्थर और दिख रहे है साइड में दो-तीन और मकान दिख रहा है।

ये एक आई.टी.आई. कॉलेज है जहां पे सामने एडमिशन का एडमिशन ओपन लिखा हुआ है।

सामने कुछ साइकिल लगे हुई है एक चेयर भी दिख रहे हैं ऊपर में आई.टी.आई. का नाम कॉलेज का नाम लिखा हुआ है एक मर्करी भी दिख --

ये एक लोहा का रेलिंग दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक और ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ है कुछ सामने में पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।